और उसमे से एक लेडिस बैठ रही है।

कैंडल जलाते है और भगवान की पूजा करते है।

एक में कप बना हुआ है जो की बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं और चांदी के मूर्तियाँ --

ठीक किया जा रहा है जहाँ एक वर्कर्स रेड कलर की ड्रेस पहने हुए हैं।

वैसे ही यहां पे भी बहुत सारे शिल्ड रखे हुए हैं और स्टाफ रूम को बहुत ही सुंदर डेकोरेट किया गया है।

आकाश में सफेद-सफेद बादल भी नजर आ रहे हैं।

बाइक पर नजर आ रहे है जहाँ इलेक्ट्रिकल --

यहाँ हमें एक रूम नजर आ रहा है।

जहाँ बहोत से बच्चे भी खड़े हैं और भी इंस्ट्रूमेंट --

यहाँ एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रहे है।

पीछे पेड़-पौधे भी नजर आ रहे है।

और यहाँ पे बड़े-बड़े पत्थर भी रखे हुए है।

रूम में एक टी.वी. भी दिखाई दे रहा है। बेड को भी बहुत अच्छी तरह से सजाया गया है।

यहाँ एक औरत और एक आदमी दोनों ही --

जहाँ एक औरत मछली बेच रही है और एक आदमी मछली खरीद रहे हैं।